प्लांट बन रहा है जहां पर मिट्टी डाली गई है।

दो लोग खड़े हुए बातें कर रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है रेस्टोरेंट मे लोग खाना खाने आते है।

बहोत ही सुंदर लाइटिंग जो की ब्लू कलर की नजर आ रही है।

यह एक सोफा ड्राइंग रूम में लगा हुआ है।

यह किसी के घर का ड्राइंग रूम है सोफा बहुत ही सुंदर लग रहा है।

काम करने के लिए युज की जाती हैं इनकी लंबाई बहोत ही ज्यादा ऊंची होती हैं।

ग्रीन कलर की नर्सरी है जहां पर सुंदर सुंदर नए नए गमले और बूटे लगे हुए--

जो बिल्डिंग का कलर है वो पिंक शेड है और इसके साथ--

बिस्किट और नमकीन इस दुकान पे इजीली मिल जाता है और भी किसी ने कुछ सामान लेना हो--

ईसा मसीह का साइन है जो लोग यहां पर आ कर--

ये एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो गंगा नगर में है ये किडनी का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है।

सबसे सुंदर इस इंडिया में यह वाला फूल है।

इस फूल की पत्तियों को एक-एक करके हम लोग गिन सकते हैं।